सामने में कुछ पेड़ दिख रहे हैं। पेड़ बड़े-छोटे सभी प्रकार के हैं। इस पूरे हरे-भरे हैं। काफी दूर में ये पेड़ लगे हुए हैं। कुछ --

ये उपर से पिक लिया गया है सामने में बहोत दूर-दूर तक पहाड़ नजर आ रहे पहाड़ पर बहोत सारे घास नजर आ रहे--

नीचे पीले रंग से रंगा गया है। कुछ गुलाबी रंग से भी रंगा गया है। सामने का गेट काला रंग से है।

उ बहोत दूर में एक बड़ा भरा भी पेड़ है। कुछ पीछे में घर भी नजर आ रहे हैं।

अलग-अलग प्रकार के यहां पर कलर नजर आ रहा है। कुछ नीला है। कुछ गुलाबी है। कुछ मिट्टी कलर का है। कुछ घास पर नजर आ रहा है।

यहाँ अम्म सामने में भी बहोत बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। पेड़ हरे भरे हैं। कुछ घास भी नजर आ रही है।